ऊपर एक गुम्बद जैसा है जो काफी गुलाबी रंग से अच्छा लग रहा है जो शोभायमान लग रहा है।

वो कैरेट के रूप में दिख रहा है सामने गाड़ी खड़ी हुई हैं।

पीछे एक सफेद गाड़ी भी खड़ी हुई है पीछे काफी खड़े हुए हैं।

एक के सिर में बाल ही नहीं हैं वो भी हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहा है।

उसके सामने काले रंग का एक पोस्टर लगा हुआ है।

हेलमेट की तरह बाधे हुई हैं सामने एक मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है।

उसे वक्त के पास में इनसाइड आउट अमेरिका लिखा हुआ है।

एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहने हुए है।

कुछ एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो काली शर्ट पहदे हुई है।

नदी में एक स्टीमर है नदी के अंदर तीन लेडीज खड़ी हुई है।